यह स्टेडियम इतना बड़ा है कि बोहोत लोग बैठ सकते हैं।

यह एक सैलून है। यह सैलून में एक नाई होता है जो हर रोज़ लोगों के बाल काटता है।

यह रोड के किनारे में एक पार्किंग की जगह बनायी गयी है। यह रोड के किनारे में लाइट्स और सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाये गए हैं।